यहां पे तीन बेड रखे हुए है।

यह एक मंगलम फर्नीचर है।

और यहां पे एक बाइक पे एक आदमी जा रहा है।

और उसके पास में तीन आदमी खड़े हैं।

और उस पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

और द्वारा में कुछ लाइट भी लगी है।

जिस ओर बाहर से कुछ व्हाइट कलर की रोशनी आ रही है।